जिसमे काफी सारे क्यूबिकल्स है।

कार्यलय है। कुछ बाइक भी खड़ी हैं।

दॄश्य एक रेस्त्रां का मालूम पड़ता है।

दॄश्य में एक क्रिकेटर बैटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

बैकग्राउंड में बादल दिख रहे है। कुछ पेड़ दिख रहे हैं और सड़क सा प्रतीत हो रहा है।

लोहे की तसले दिख रहे हैं। फावड़ा दिख रहा है।

जमीन पर खूबसूरत टाइल्स लगे हुऐ। एक तरफ लक --